फोटो बस खिचाने के लिए गए हैं अच्छा कटता होगा यार प्रोफेशनल सेलून कुछ ब्लू-ब्लू देखिच कए लगत हैं कुछ यूनिक कटता होगा बाल उल यहाँ --

अकाउंट भी कर और अकाउंट भी खोला सकते है जैसे पैसा -वैसा सेव करना हो तो --

ये तो कोई न डैम टाइप का लग रहा है और हा बहोत बड़ा नदी उदी लग रहा है।

बहुत सारे बच्चे लोग भी दिखाई है सर कुछ पढ़ा वढ़ा रहे है।

और कॉलेज वॉलेज का लग रहा है ये कोचिंग ओचिंग का हैं ये जगह--

और कुछ तो हुआ है जाके यहाँ देखना पड़ेगा की क्या हुआ है क्या नहीं कर --

अरे बाप रे इतना बड़ा पार्क है गार्डन वार्डन है।

इ कहाँ वाला है दूसरे जगह का इ हो सकता है पर मेको रायपुर का लग रहा है ये जगह--

स्विमिंग पूल भी है फिसलपट्टी भी है अभी बोहोत डेवलप हो गई है वो जगह भी --

अलग - अलग प्रकर के बुक है अलमारी भी वो भी अरे यार लाइब्रेरी है लाइब्रेरी --

ए तो कोनो टी. वी. का शोरूम लग रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम का है फ्रिज व्रिज भी रखते होंगे इन लोग--